एक मूर्ति नजर आ रही है जो काली माता की मूर्ति है काली माता के एक हाथ में त्रिशूल है एक में कटी मुंडी है एक में कटोरा है एंड एक मे फरसा है एंड काली माता का जो लिवास है वह काला है यहां पे दो तीन लोग हैं जो पूजा भी कर रहे हैं।

ऊपर झूमर लगे हुए हैं यहाँ पे कुछ लोग भी है एक लडका है जो हाथ मैं ब्लू कलर का बैग लेके खड़ा हुआ है यहाँ पे।

किनारे किनारे इसके इधर-उधर पेड़ है काफी सारे पीछे हमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और बिजली के वायर नजर आ रहे हैं जो मैदान है काफी बड़ा है पूरा कच्चा मैदान है एक बंदा खड़ा है जो वाइट कलर के पेंट और पिंक कलर के टी-शर्ट पहने हुए हैं ।

ऐ.सी. लगी हुई है इनपे कुछ लिखा हुआ भी है और वहाँ जो सड़क है उसमें कोई भी नहीं है सुनसान पड़ा--

काफी सारे पीछे में विंडो नज़र आ रही है जिसपे कर्टेन लगे हुए है एक विंडो है जिसपे जिससे हमें बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है और ये जो कर्टेन रखा है उसके बीच में कुछ शीशा लगा हुआ हैइधर-उधर विंडोज लगे हुए है।